खूब अच्छा अच्छा खाये वाला दुकान होउय। कुछ सुंदर लागता। बैटरी वाली के गाड़ी जाता। आदमी ओ --

खूब सुन्दर खूब डिज़ाइन लागल बा ओपर खूब अच्छा लागता एगो आदमी खड़ा हो के फोटो खिचवाब ताड़न खूब सुन्दर --

ये आदमी कुर्सी पर बैठ के फोटो खिचवाता। खूब अच्छा लगता। स्टार भी बा। फुलौना भी बा। खूब अच्छा लगता। खूब सुंदर लगता। आदमी बच्चों फोटो ढीचवा --

इ मंदिल हवे खूब अच्छा लागता आदमी पेड़ बा खूब सुंदर लागता। दू पहिया से आदमी जा तन लोग इ सीढ़ी बनल बा ऊपर दू जाने बइठल खड़ा बान लोग।

खूब अच्छा लागता आदमी जा ताड़न कहीं खूब बड़हन घर बाटे डब्बा में कुछ धइले बाड़न लोग बेचे खातिर माटी वाला हॉल हउए खूब सुन्दर लागता --